यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है और इसमें कुछ नाव दिखाई दे रही है हालांकि काला लाल कलर का और यहाँ पे एक सीढ़ी देख रही है सफेद कलर की और यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

दो पंखे लगे है काले कलर के लाइट्स भी जल रही है और दुकान के बाहर ओर उम दो चार लोग है जिसमे बैग लिए हुए है और शीशा अ दिख रहा है और घड़ी लगी हुई है।

यहाँ पर एक फूल दिख रहा है जिसका कलर लाल पीला नीला और ऑरेंज है और एक टॉवल लटका हुआ दिखाई दे रहा है हरे कलर का और फ़ूलों के पीछे एक आदमी खड़ा दिख रहा है लाइट्स जल रही है दिन का समय है।

और फूलों की टोकनी रखी हुई है पीले कलर की फूल रखे है इसमे--